लाल रंग की शर्ट पहन के खड़ा है। ऊपर एक चट्टान सा बना हुआ है। यहाँ पे नीले रंग का घर भी बना है।

यहाँ पर बहुत सी मोटरसाइकिल भी खड़ी है। यहाँ पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा है। आसपास बहुत सी दुकानें भी हैं।

यह एक चर्च है जहां बहुत सारे लोग खड़े हुए है | आपस में बातें कर रहे है | चर्च बैलून से सजाया गया है | बैलून ब्लू और वाइट कलर के है | यहां पे चर्च का सिम्बोल भी बना हुआ है जो काफी सुंदर है ।

पीछे चादर लगी हुई है। यहाँ पे तरह तरह के फूल लगे हुए है। यहाँ पे एक चेयर है जो रेड कलर की है। पास में एक गुलदस्ता है। जिसमे बहोत छोटा सा पौधा लगा हुआ है।

आसपास ये कैन रखी है। यहां पे पंखा भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक नदी है। नदी का पानी सफेद है। आसमान भी सफेद है। यहाँ ब्रिज के पीलर बहोत ही म --